बैटिक से चलता है ये इसमें कोई प्रदूषण का चिज नहीं है।

दुकान का बोर्ड लगा हुआ है कोको कोला का भी बोर्ड लगा हुआ है एक ठेली है जिसपे --